डीजल पेट्रोल लेने आते हैं । बहुत सारी गाड़ी भी यहाँ डीजल पेट्रोल भराने के लिए आते हैं । यह पंप बहुत ही पुराने हैं। ये बहुत दिन से --

इस टावर से हर एक मोबाइल में नेटवर्क मिलते हैं। यहाँ लोग काफी --

यह एक तालाब है। यह तालाब बहुत ही बड़े है। इस तालाब में काफी गहराई पानी है। इस तालाब में बहुत से बत्तख तैर रही है। तालाब के बगल में काफी घर दिखाई देते हैं यह --

यहाँ कुछ लड़के क कुस्ती कर रहे हैं। ये अपना बॉडी बना रहे हैं। बहुत ही वजन दार सामान उठाये --

यह एक छोटा-मोटा बाज़ार है यहाँ बहुत सारी दुकाने भी लगी हुई हैं कुछ राशन दुकान भी यहाँ है जो श्री नारायण --